बहुत सारे लोग हाथ जोड़ कर पानी में खड़े हुए हैं।

कुछ मछलियाँ छोटी तो कुछ मछलियाँ बड़ी दिखाई दे रही है |

जिसके उपर सीट के उपर भी पोलोथिन लगी हुई है |

छोटे-छोटे घास दिख रही है।